और पीछे बड़ा सा घर भी है.

तरह तरह की बोट लगी हुई है।

स्कार्पियो लगी हुई दिखाई दे रही है.

तीन औरतें भी दिखाई दे रही है.

बहोत सारे फूल पत्तियां भी हैं।

बिजली का खंभा है जिसमें बहुत सारी तारे--

बहुत सारे लोग बैठे हुए--

पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी है और एक साइड --

मुझे यह एक शॉप दिखाई दे रही है जहां बहुत सारे पिज़्ज़ा के पैकेट रखे हुए हैं.

टेबल के ऊपर कंप्यूटर भी रखे हैं.

कई लोगों ने--

यह मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है.

जा रहे हैं--

और गेट के बाहर एक गुवारे वाली--

साथ एक अंकल कैंडी बेच रहा--

बीच में बना हुआ है और जिसके चारों ओर--

यहां मुझे गोल्ड प्लस का एक पाऊच दिख रहा है।

दिखाई दे रहे हैं जिसमें लड़की की फोटो बनी है।

छोटे-छोटे पेड़ भी लगाए--

दिखाई दे रहे हैं जो--

पांच पिलो दिखाई दे रही है.

ब्लू जैकेट पहना--

की शॉफ दिखाई--